बनी हुई है जो नीले कलर की है और बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं एक साइड में एक लाल पोस्टर लगा है जिसमें यह--

और उसके इस साइड बहोत सारे पेड लगे हुए है बड़े पेड़ है और कुछ छोटे पेड़ लगे हुए है।

सामने एक ट्रेन दिख रही है जो ऊपर सफेद नीचे--

सामने एक नदी दिख रही है जिसका पानी --

उपर आसमन में सूरज दिख रहा है और आसमान रंगीन दिख रहा है पीछे कुछ पेड दिखई दे रही है।

एक नीला बोर्ड लगा है जिसमे सफ़ेद कलर से जन स्वास्थ्य ---

दुकान है ऊपर नीला सफेद आसमान है।

है और नीचे बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई है जो सफेद कलर की है और रेलिंग बनी--

खंबा बना है जिसके ऊपर एक चक्का बना हुआ है खंबा कहीं ग्रीन और कहीं पीले --

सामने एक दूर बड़ा मंदिर दिख रहा हैजो रंगीन कलर का है और नीचे--

ने ग्रीन कलर की नेट बंधी हुई है जिसमें पट्टी पीले कलर की हैऔर सामने एक छोटी लाल कार्ड दिख रही है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ आदमी--

खड़े हुए हैं और सामने एक आदमी एक महिला खड़ी है महिला के हाथ में बॉल है और एक छोटी--

सामने एक नदी दिख रही है जिसका पानी सफेद--

दिख रहा हैऔर उनकी पीछे गुफा है जिसमें अंदर काला दिख रहा है।

और साइड में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और एक बूट लगा है लकड़ी के जिसमें--

पानी की गिलास और कुछ प्लेट मैन्युअल ---

लिखा हुआ है और निचे फूलो की जालर लगी हुई है बहोत सारे आदमी दिख रहे है।

सामने एक टेबल दिख रही है जो पीले कलर की जिसके सामने एक कुर्सी है और पीछे--